यहां कई झाड़ियां और--

यह तस्वीर एक ऑफिस के कैबिन की है।

यह तस्वीर एक ऑफिस की है।

यह तस्वीर बहोत सारी मोटरसाइकिलों की है।

बहोत सारे गुब्बारों से सजे हुए एक ऑफिस की है।

कई लोग और महिलाएं--

यहां भीड़ में शामिल है जमीन पर--

यहां स्टेज लगाया गया--

इसमें यह एक सरकारी स्कूल से ।

ये फोटो एक ऑटो की है।

कमरे की है दीवार पर--

यह तस्वीर एक स्काई नामक लैब की है।

पहनी हुई है साथ में थोड़ी दूरी पर एक टेबल रखा--

बहोत सारे पादरी खड़े हुए हैं उनके पास एक आदमी--

यहां लोहे की ग्रिल भी--